और और भी लोग जाते हैं जैसे अगर मन बहलाना हो तो पार्क चल जाते हैं घूमने जानवर को देखने सांप को देखने चिड़ियाँ को देख --

एक तीर्थ अस्थल है हम लोग कभी-कभी जाते है घूमने छुटियाँ मनाने और बच्चे सब का छुट्टी होता है तो हम जाते हैं मनाने |

और भाड़ा कराने के लिए कहीं-कहीं हम लोग को जरुरत पड़ता है जाने के लिए तो ये इ-रिक्शा को फ़ोन कीजिए बुला लीजिए और बैठ कर चले जाइए।